जहां पे और भी समान रखा--

और देखने में सुंदर भी--

की यहां पर बहोत सारी सुंदर सुंदर--

हैं कि यहां पर एक ट्रेन जाते हुए आपको दिखाई --